लिनक्स एन्वाइरन्मेंट और इसके कुशलतापूर्वक उपयोग करने के तरिकों में इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में एक कार्यरत लिनक्स सिस्टम के सचित्र उदाहरणों की कोशिश के लिए अधिकतम उबंटु की आवश्यकता होगी
हम मानते हैं कि आप जानते हैं कि किस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ शुरुआत करे और कमांड्स फाइल सिस्टम तथा शेल के बारे में कुछ मूलभूत ज्ञान भी है
यदि आप इच्छुक हैं या इन संकल्पनाओं को सुधारना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल के माध्यम से बेझिझक कीजिए
कृपया ध्यान दें कि उबंटु 1010 का उपयोग इस ट्यूटोरियल की रिकार्डिंग के लिए किया गया था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
लिनक्स एन्वाइरन्मेंट निर्धारित करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके साथ किस प्रकार व्यवहार करता है आपकी कमांड का जबाब किस प्रकार देता है किस प्रकार आपके कार्यों को एंटरप्रेट करता है आदि
शेल की सेटिंग में परिवर्तन करके लिनक्स को अधिक अनुकूलित कर सकते है
अब समझते हैं कि यह सब कैसे हो सकता है
साधारणतः शेल का व्यवहार शेल के वेरिएबल्स से निर्धारित होता है
शेल वेरिएबल्स दो मुख्य प्रकार के होते हैं
एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल्स एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स नामित हैं क्योंकि वे उपयोगकर्ता के संपूर्ण एन्वाइरन्मेंट में उपलब्ध हैं
यह शेल द्वारा बनाये गए सबशेल में भी उपलब्ध हैं जैसे के शेल स्क्रिप्ट्स को रन करने वालो की तरह
लोकल वेरिएबल्स जैसे के नाम से पता चलता है उनकी प्रतिबंधित या सीमित उपलब्धता है
ये शेल द्वारा बनाए गए सबशेल के लिए उपलब्ध नहीं हैं
जबकि इस ट्यूटोरियल में हम मुख्य रूप से एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे पहले देखते हैं कि इन वेरिएबल्स की वेल्यू कैसे देख सकते हैं
वर्त्तमान शेल में सभी उपलब्ध वेरिएबल्स को देखने के लिए हम कमांड सेट को चलायेंगे
टर्मिनल पर टाइप करें सेट स्पेस वर्टिकल बार मोर और एंटर दबायें
हम सभी वर्त्तमान शेल वेरिएबल्स को देख सकते हैं
उदाहरणस्वरूप होम एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स पर देखकर इसके लिए नियत वेल्यू पर भी ध्यान दें
सूची के माध्यम से स्थानांतरित होने के लिए एंटर दबायें बाहर आने के लिए क्यू क्यू दबायें
यहाँ वेरिएबल सूची की सुनियोजित मल्टीपेज आउटपुट को और अच्छे से प्रदर्शित करने के लिए सेट में से आउटपुट को क्रम में किया है
केवल एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स देखने के लिए इएनवी कमांड चलायें
टर्मिनल में टाइप करें ईएनवी vertical बार मोरे इएनवी स्पेस वर्टिकल बार मोर उदाहरणस्वरूप शेल वेरिएबल पर ध्यान दें जिनकी वेल्यू binbashबिनबैश है फिर से सूची के बाहर आने के लिए आप क्यू दबायें
अब लिनक्स में कुछ अधिक महत्वपूर्ण एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल्स पर चर्चा करते है
हम यहाँ अपने सभी प्रदर्शनों के लिए बैश शेल का उपयोग करेंगे
विभिन्न शेल्स थोड़ा विभिन्न तरीकों से अनुकूलित हैं
वेरिएबल वास्तव में क्या संग्रह करता है यह देखने के लिए हमें उस वेरिएबल के नाम के आरंभ में डॉलर चिन्ह लगाना है और उसके साथ एचो कमांड का उपयोग करना होगा
प्रथम एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल जिसे हम देखेंगे वह है शेल वेरिएबल
यह वर्त्तमान शेल का नाम संग्रह करेगा
शेल वेरिएबल की वेल्यू क्या है देखने के लिए एचो स्पेस डॉलर शेल टर्मिनल पर इको स्पेस डॉलर शेल केपिटल में टाइप करें और एंटर दबायें
यह बिनबैशbinबाश शेल है जहाँ हम फ़िलहाल ऑपरेट कर रहे हैं
दूसरा वेरिएबल होम है
जब हम लिनक्स में लोगिन करते हैं यह साधारणतः हमें एक निर्देशिकाडाइरेक्टरी में स्थान देता है जिसका नाम हमारे यूजरनेम पर रखा होता है
इस निर्देशिकाडाइरेक्टरी को होम निर्देशिकाडाइरेक्टरी कहते हैं और यह वास्तव में यह वही है जो होम वेरिएबल में उपलब्ध है
वेल्यू देखने के लिए टर्मिनल पर एचो स्पेस डॉलर h o m ई टर्मिनल पर इको स्पेस डॉलर शेल केपिटल में टाइप करें और एंटर दबायें
अगला एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल पाथ है
पाथ वेरिएबल में निर्देशिकाओंडाइरेक्टरिस के एब्सोल्यूट पाथ होते है जिनमें से शेल को निष्पादन योग्य कमांड की खोज करनी होती है
अब पाथ वेरिएबल की वेल्यू देखते हैं
फिर से टर्मिनल पर इको स्पेस डॉलर पाथ एचो स्पेस डॉलर PATH बड़े अक्षर में टाइप करें
मेरे कंप्यूटर पर यह userlocalsbinuserlocalbinusersbinuserbin आदि निर्देशिकाएँडाइरेक्टरिस दिखाता है
यह एक से दूसरे सिस्टम पर थोड़ा भिन्न हो सकता है
वास्तव में यह कोलन डीलिमीटर द्वारा विभाजित निर्देशिकाओं डाइरेक्टरिस की सूची है जहाँ से शेल इस क्रम में एक निष्पादन योग्य कमांड की खोज करेंगा
हम इस सूची में अपनी खुद की निर्देशिकाडाइरेक्टरी जोड़ सकते हैं ताकि शेल द्वारा हमारी निर्देशिका डाइरेक्टरी भी ढूँढी जाय
अपनी खुद की निर्देशिका डाइरेक्टरी को जोड़ने के लिए टर्मिनल पर टाइप करे पाथबड़े अक्षर में इक्वल टू डॉलर पाथ फिर से बड़े अक्षर में कोलनहोमltthe name of my own home directorygt और एंटर दबायें
अब यदि हम पाथ की वेल्यू का अनुकरण करें यानि एको करे
हमारी संकलित निर्देशिकाडाइरेक्टरी भी पाथ वेरिएबल का एक भाग हो जाएगी
निर्देशिकाडाइरेक्टरी को देखें अब यहाँ मौजूद है
एक और दिलचस्प वेरिएबल है लोगनेम
यह वर्तमान सक्रिय यूजर के यूजरनेम को संग्रहीत करता है
वेल्यू देखने के लिए टाइप करे इको स्पेस डॉलर लोगनेम और एंटर दबायें
जब हम टर्मिनल को खोलेंगे हम डॉलर चिन्ह देख सकेंगे जो प्रोंप्ट है जिस पर हम अपने कमांड्स एंटर करते है
यह एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल पीएसवन द्वारा प्रतिनिधित प्राथमिक प्रोंप्ट स्ट्रिंग है
यहाँ एक द्वितीयक प्रोम्प्ट स्ट्रिंग भी है
यदि कमांड लम्बी है और यह एक लाइन से अधिक फैलती है तो दूसरी लाइन की शुरूआत से हम प्रोंप्ट के रूप में ग्रेटर दैन का चिन्ह जीटी देख सकते हैं
यह एन्वाइरन्मेंट वेरिएबल पीएसटू द्वारा प्रतिनिधित द्वितीयक प्रोंप्ट स्ट्रिंग है
द्वितीयक कमांड प्रोंप्ट को देखने के लिए टर्मिनल पर इको स्पेस डॉलर पीएसटूबड़े अक्षर में टाइप करें और एंटर दबायें
हम प्रोंप्ट पर ऐट द रेट ltgt कहकर अपने प्राथमिक प्रोंप्ट स्ट्रिंग को बदल सकते हैं
ऐसा करने के लिए पीएसवनबड़े अक्षर में इक्वल -टू अब उद्धरण चिन्हों के भीतर ऐट द रेट टाइप करें और एंटर दबायें
अब डॉलर चिन्ह के बजाय हमें प्रोम्प्ट के रूप में एक ऐट द रेट का चिन्ह दिखेगा
हम कुछ अधिक दिलचस्प कर सकते हैं जैसे हम अपने यूजरनेम को प्रोंप्ट के रूप में दिखा सकते हैं
केवल पीएसवनबड़े अक्षर में इक्वल टू उद्धरण चिन्हों के भीतर डॉलर लोगनेल टाइप करें और एंटर दबायें
अब मेरा यूजरनेम मेरा प्रोंप्ट है
वापस आने के लिए पीएसवन इक्वल टू उद्धरण चिन्हों के भीतर डॉलर टाइप करें और एंटर दबायें
हमने कई एन्वाइरन्मन्ट वेरिएबल्स की वेल्यू को नियत किया है
लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह संशोधन केवल वर्तमान सत्र के लिए ही अनुकूल हैं
जिस तरह हमने अपनी निर्देशिकाडाइरेक्टरी को पाथ वेरिएबल में जोड़ा था
यदि हम टर्मिनल बंद करते हैं और इसे फिर से खोलते हैं या पूर्ण रूप से एक नया टर्मिनल खोलते हैं और पाथ वेरिएबल को उसकी वेल्यू द्वारा की जाँच करते हैं
हम यह देककर आश्चर्यचकित होंगे कि हमारे संशोधन मौजूद नहीं हैं
इन संशोधनों को हम स्थाई किस तरह रख सकते हैं यह आगे आने वाले ट्यूटोरियल में कवर किया जायेगा
अक्सर हम कमांड को पुनः निष्पादित करना चाहते हैं जिसे हमने हाल ही में निष्पादित किया था
हम क्या करे160
क्या हम पुरे कमांड को पुनटाइप करे160
नहीं इसके कई समाधान हैं
पहले साधारणतः यदि आप अपने कीबोर्ड में अप डायरेक्सन की की को दबाते हैं तो यह आखिरी कमांड दिखायेगा जो कि आपने टाइप की है
की को दबाकर रखें और यह पिछली कमांड्स में से स्क्रोल करता रहेगा
पीछे जाने के लिए डाउन डायरेक्सन की की दबायें
लेकिन जब आप कई कमांड्स से स्क्रोल करते हैं यह थोड़ बेढंगा और अरोचक हो जाता है
अच्छा यह होगा कि हिस्ट्री कमांड का उपयोग करें
प्रोंप्ट में हिस्ट्री टाइप करें
और एंटर दबायें पिछली निष्पादित कमांड्स की उपस्थित सूची देखें
यदि लम्बी सूची के बजाय आप केवल आखिरी दस देखना चाहते हैं
हिस्ट्री स्पेस 10 टाइप करें और एंटर दबायें
ध्यान दें इस सूची में प्रत्येक पिछली निष्पादित कमांड्स के लिए नंबर नियत है
विशेष कमांड को दोहराने के लिए
टाइप करें विस्मयादिबोधक चिह्न इक्स्लामेशन मार्क जिसके बाद कमांड का नम्बर उदाहरणस्वरूप 442 मेरे केस में इको स्पेस डॉलर पाथ निष्पादित करेगा
यदि आपको पिछली कमांड को निष्पादित करने की आवश्यकता है केवल दो बार इक्स्लामेसन चिन्ह टाइप करें और एंटर दबायें
अगला विषय जो हम देखेंगे उसे टिल्ड सब्स्टिटूशन कहते हैं टिल्ड चिन्ह होम डाइरेक्टरी के लिए शोर्टहैंड है
तो कहें आपके पास टेस्टट्री नाम की एक डाइरेक्टरी आपकी होम डाइरेक्टरी में है
आप सीडी स्पेस टिल्ड स्लैश टेस्टट्री टाइप करके इस तक पहुँच सकते हैं
प्रेसेंट वर्किंग डाइरेक्टरी और पिछली इस्तेमाल की गयी डाइरेक्टरी के बीच टागल भी कर सकते हैं यह कमांड देकर
सीडी नरेशन सीडी स्पेस टिल्ड माइनस या केवल सीडी नरेशन सीडी स्पेस माइनस जैसे कि अभी हम टेस्टट्री डाइरेक्टरी में हैं पिछली डाइरेक्टरी जिसमें हम गये थे वह होम डाइरेक्टरी थी तो यदि हम सीडी स्पेस माइनस चलाते हैं यह होम डाइरेक्टरी में चला जायेगा
इसे फिर से रन करे और आप टेस्टट्री डाइरेक्टरी में वापस आ जाते हैं
आखिरी लेकिन काफी महत्वपूर्ण कमांड जो हम देखेंगे वह है एलाइस कमांड
ऐसा हो सकता है कि आप के पास लम्बी कमांड हो जिसे बार बार चलाने की जरूरत पड़े
इस मामले में हम इसे एक छोटा एलाइस नाम दे सकते हैं और कमांड को चलाने के लिए एलाइस नाम का उपयोग कर सकते हैं
मानिए कि आपके पास ऐसी एक लम्बी डाइरेक्टरी क्रम है जिस पर आप अक्सर संगीत के लिए जाते हैं आप इसके लिए इस प्रकार एक एलाइस तैयार कर सकते हैं
एलाइस स्पेस सीडी म्यूजिक इक्वल टू दोहरे उद्धरण चिन्हों के भीतर सीडी स्पेस होमआर्क फाइल्सएंटरटेनमेंटम्यूजिक टाइप करें और एंटर दबायें
अब प्रत्येक समय इस डाइरेक्टरी में जाने के लिए केवल सीडीम्यूजिक लिखें और एंटर दबायें
देखें अब हम म्यूजिक डाइरेक्टरी में हैं
अब आप पिछली वर्किंग डाइरेक्टरी में जाने के लिए प्रोंप्ट में सीडी स्पेस माइनस टाइप कर सकते हैं
इस एलाइस को निरस्त यानि कैन्सल करने के लिए केवल अनएलाइस स्पेस सीडी माइनस टाइप करे और इंटर प्रेस करे
अब फिरसे यदि आप टर्मिनल से सीडीम्यूजिक लिखते हैं आपको एक एरर मिलेगा कि कमांड मौजूद नहीं है
मान लो कि हमारी प्रेसेंट वर्किंग डाइरेक्टरी में हमारे पास टेस्ट1 और टेस्ट2 दो फाइलें हैं
और यदि हम आरएम टेस्ट1 चलाते हैं टेस्ट1 डिलीट हो जाता है
हम जानते हैं कि आरएम कमांड का हाइफन आई पर्याय हटाने की प्रक्रिया इंटरैक्टिव कर सकता है
तो हम एलाइस आरएम इक्वल टू अब उद्धरण चिन्हों के भीतर आरएम स्पेस -i जैसा एक एलाइस सेट कर सकते हैं
अब जब हम आरएम आरएम i चलायेंगे वास्तव में चलेगा यानि रन होगा
तो हमने देखा कि जब टेस्ट1 डिलीट हो जाता है सिस्टम टेस्ट2 डिलीट करने से पहले पूछता है
तो इस ट्यूटोरियल में आपने एन्वाइरन्मन्ट वेरिएबल्स हिस्ट्री और एलाइजिंग के बारे में सीखा
यह मुझे इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर लाता है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
अधिक जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है तथा आई आई टी बॉम्बे की तरफ से मैं सकीना शेख अब आप से विदा लेती हूँ
धन्यवाद